अलग-अलग तरह के डिजाइन जैसे देख रहे हैं। यहां पे ए_सी लगी हुई है। यहां से आप देख सकते हो लाइट भी लगी हुई है।

पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं यहां पे ये बैठने का भी स्थान बना रखा है और ऊपर ये यहां पे लाइट के खंभे दिख रहे है।

और यहां ये आदमी बैठे हुए हैं।